कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है कुछ काली कुछ सफ़ेद कलर की पत्थर पहाड़ जैसा है नीचे कुछ रास्ता भी है कुछ बिजली के खम्भे भी दिखाई दे रहे है।